एक लड़का डांस करते दिखाई दे रहा है तथा दो लड़के काउंटर पे खड़े है।

यहाँ एक जे.सी.बी. दिखाई दे रही है जो की ऊपर रखी हुई है तथा कुछ लोग यहाँ नीचे दिखाई दे रहे है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कई तरह के सामान रखा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है जो कि लेयर मे बैठी है कुछ नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है कुछ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक पुराना किला दिखाई दे रहा है इसमे कईं छारी- सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है एक इसमे मैन दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ब्लैक कलर की झोपडी बनी हुई दिखाई दे रही है एक खंभा दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक इ-रिखशा दिखाई दे रहा है जिसमे एक आदमी चाबी देते हुए एक महिला को दिखाई दे रहा है यहाँ एक स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही है।

आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तथा हां यहाँ बाइक दिखाई दे रही है।

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है जो की शादी का दिख रहा है। यह डेकोरेट हुआ है। इस पे गोलनुमा एक दरवाजा बना हुआ है तथा लाइटिंग लगी हुई है।

तथा इस पे दो हार्ट बने हुए है। यह एक आदमी जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है।